यहां एक हॉस्पिटल का वेडिंग हॉल है।

पंखे भी लगे हुए हैं और लाइट्स भी जगी हैं।

ये एक चर्च है चर्च के अंदर इशू मसीह की तस्वीर लगी है दीवाल पर कुछ और भी--

सामने कुर्सी टेबल लगा है एक लड़की यहां--

मुसम्मी सेब और भी फ्रूट यहां रखा है।

सामने कोई फेस्टिवल चल रहा है।

एक बैनर भी यहां रखा है।

यहां एक बड़ा सा टावर भी लगा--

बहोत सारी लाइट्स जगाई गई है।